बड़े एवं छोटे अपराधियों को इस कोर्ट में सजा के लिए लाया जाता है यहाँ पे होती है और उसे सजा सुनाया जाता है एवं बहुत ही और भी बहुत अच्छे-अच्छे काम होते यहाँ।

मछलिया सभी प्रकार की मछलियां उचित मुल्य पर मिलती है एवं यहां पर ताजी मछलिया मिलती है।

कतार में छात्र है एक कतार में छात्रा है जिनको मैंटेन करने के लिए उनके टीचर भी यहीं पर उपलब्ध है।

मिलके खाना खाया जा रहा है यहाँ से दूर-दूर लोग काफी मात्रा में आते हैं यहाँ पर बहोत भीड़ भी होती है और बहोत अच्छा नजारा यहाँ लगता है।

पालन करने वाले भी किसान होते हैं जो एक मछली पालन करते हैं नाम से मछली को मारते हैं।

है भी बहुत अच्छी से हमसे व्यवहार करते हैं सिक्योरिटी के मामलो में भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिटर्निंग देती है यह बैंक ।

भी खरीदा जाता है एवं कॉलेज में नए बुक एवं पुराने बुक भी अच्छे एवं उचित दामों पे उपलब्ध कराया जाता है।

और यहां पे कॉपी किताब कलम और पढ़ाई अच्छी स्टेशनरी भी मिलते हैं।

यहां पर बारी-बारी से कतारबद्ध महिला एवं पुरुषों की जांच किए जाते हैं।

यहां कुछ घर भी बनाया जा रहा है यहां पर लोग अपने नवाज अदा करने आते हैं।

वाट में कन्वर्ट करके पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है जिससे --

एक हॉस्पिटल का बेड ब्लॉक है जहां पर उम्म उम्म मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है यह।

यहां यहां एक गांव में शिविर प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहां पर बच्चों को एक पोष्टिक आहार के ए ए --

काफी बढ़िया हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करने के लिए आते हैं और इसे आकर्षक बनाने के लिए --